लेकिन एक बी स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं है।

और उसके बाहर में गार्डन भी है और अगल-बगल में कुछ पेड़ पौधे भी हैं और वह देखने में बहुत ही --

लेकिन उसमें पढ़ने के लिए एक भी स्टूडेंट नहीं हैं।

जिम में एक्सरसाइज कर रहा है और ओ जिम रेड कलर का है।